उन्हीं की तरफ एक बड़ा एल_ई_डी स्क्रीन दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक बैठने की जगह भी दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट पे बहुत सारे लाइटें जल रही है।

इस फोटो में एक शाम के समय का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की तरफ एक मंदिर आकृति की इमारत दिखाई दे रही है।

दृश्य में बहोत सारे लोग सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के ऊपर एक काला कलर का प्लेट दिख रहा है।

मोटरसाइकिल साइड में रखी हुई दिखाई दे रही है।

दृश्य में गेट के उसे पार किसी की मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक छोटी सी लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है और नीचे बहोत सारी बांस और कुछ कागजे परी हुई दिखाई दे रही है।

दीवार में एक ए_सी लगा हुआ है और कोने की तरफ कुछ बैलून भी लगाए हुए हैं।

सामने की तरफ एक आदमी मोटर गाड़ी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक नीले कलर का कपड़ा जमीन में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक नर्सरी के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

दृश्य में बहुत सारे पंछियों की घोसले भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस फोटो में एक रस्ते किनारे का दृश्य दिखाया गया है।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

दुकान के सामने एक और बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

दृश्य में नदी किनारे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में ओस पड़ती हुई दिखाई दे रही--

फोटो में बड़ा एक पेड़ और दूर की तरफ बहुत सारे पहाड़ दिख रहे है।

इस फोटो में शाम का दृश्य दिखाया गया है।

दृश्य में पीछे की तरफ एक लाल कलर का बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।